यहां पे एक सूखी घास भी दिख रही है उसके पीछे कई सारे पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर म महिला और पुरुष खड़े हैं पीछे एक बाइक खड़ा है जो रेड कलर का है पीछे कई सारे घर दिख रहे हैं तार दिख रहा हैं।

यहां एक पक्षी चल रहा है उसके पैर में एक लकड़ी दिख रहा है।

यहां पे दो टेबुल दिख रहे हैं टेबुल के ऊपर कुछ और डंटे रखे हुए हैं।

नीचे में कई सारे बोतल रखे हुए हैं स्प्रे रखा हुआ है ऊपर में प्लास्टिक रखा हुआ है।

लड़का ने हेलमेट पहना हुआ है पीछे एक आदमी यहां से छोला है पीछे एक कुल्फी वाला दिख रहा है।

नीचे में दो चेयर दिख रहा है यहां पे एक बेसिन दिख रहा है जिसके ऊपर एक नल लगा हुआ है।

के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में पाइप कट कर रखा गया है।

बगल में एक आदमी का पिक्चर भी दिख रहा है यहां पे तीन चार सीढ़ी दिख रही है।

यहां पे ऐ_सी भी है पीछे में एक तार दिख रहा है यहां पे एक घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है एक कार पार्क है बाइक पार्क किया हुआ है।

उसके बगल में एक पहाड़ और है यहां पे आसमान के ऊपर कई सारे बदल दिख रहे हैं।

यहां पे एक गाड़ी का दृश्य दिख रहा हैं गाड़ी के आगे साईड एक डंडा लगा हुआ है उसके नीचे एक ईटा रखा हुआ हैं।

और यहां आसमान भी दिख रहा है यहां पे एक पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे घर के ऊपर रॉड लगा हुआ यहां पे बहुत सारे घास उगें हुए हैं।

तीनो आदमी एक आदमी टोपी पहना हुआ है जो व्हाइट कलर का बगल में एक स्वेटर पहना हुआ है ब्लू कलर का यह पे दो साइकिल दिख रहे है।

यहां पे एक बाइक पार्क है यहां पे एक पेड़ के बगल में एक बाइक पार्क किया हुआ है।

यहां पर एक और बैग दिख है जिसके ऊपर बहुत सारे प्लास्टिक लगे हुए हैं।